यहाँ पर रथ रखा हुआ है यहाँ पे बहुत सारे जैंट्स खड़े हुए है घर दिख रहे है मकान पेड़ दिख रहे है और बादल दिख रहा है।

नीचे जगह दिख रही है।